डेंटिस्ट नीचे लिखा हुआ है बगल में कोकोकोला की पोस्टर लगी हुई है उसके नीचे अमूल की पोस्टर लगी हुई है और एक और मकान नजर आ रहा है जिसका रंग पीला है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यहां तक एक एरिया नजर रहा है जो कि--

कैंडल्स नजर आ रहे हैं और जमीन पे ये सारी चीजें रखी गई हुई हैं।

ते ये पिक्चर एक चट्टान की नजर आ रही है।

ये पीछे बकेट हैं चार जो कि हरे रंग की है। उसके अंदर की साइड सफेद रंग की है।

बाउंड्री बनाई गई हुई है बाउंड्री का कलर पीला और भूरा नजर आ रहा है।

बस के पीछे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो कि गुंबज है यहां पे।

ये पिक्चर एक मंदिर की पिक्चर नजर आ रही है एक बड़ी गुम्ज गुंबज नजर आ रही है जिसका रंग सफेद है।

छोटी गुंबज नजर आ रही है जिसका रंग पीला और ऑरेंज है।

ये पिक्चर एक कमरे का है जहां पे एक लाल रंग की टेबल है।

जैसा कि आप देख सकते इस पिक्चर में ये पिक्चर एक सप्त सो अ दुकान की पिक्चर नजर आ रही है।

और ये कवर किया गया हुआ है ग्रिल से लोहे से और--

और जो सीलिंग है वो सजाई गई हुई है बैलून से रिबन से।

और जो दिवाल है उसका रंग सफेद है जो गेट है उसका रंग ब्लू है।

इसके केक के ऊपर बहुत सारे अ चीजों से गार्निशिंग की गई हुई हैं लाइक ।

और पार्किंग टाइल्स नजर आ रही है जो कि ऑरेंज और व्हाइट कलर पे है।

लकड़ियों की जिस पे सजावट की गई हुई है भगवान की प्रतिमा बनाई गई हुई है।

एक पे गणेश भगवान नजर आ रहे हैं कान्हा जी नजर आ रहे हैं दूसरे पे भी गणेश भगवान नजर आ रहे हैं।

एक खाली जगह की है जहां पे दूर दराज बंजर जमीन नजर आ रही है।